और वही सूरज लाइट की बाजू में एक मकान बना हुआ है।

ये फार्म हाउस में आए हुए हैं और डेरी खरीद रहे हैं।

यह एक फार्म हाउस है जिसमें बहोत सारे टप रखे हुए है टप को बेचा जा रहा है मशीने लगी हुई है।

यह एक पपीता की दुकान है। फल की दुकान है जिसमें--

से जूते चप्पल की दुकान हैं। लोग यहाँ आते हैं समान खरीदते हैं। टेबल लगी हुई हैं।

और गाड़ियां खड़ी हुई है। इसमें बहोत अच्छा गेट लगा है और इस बिल्डिंग के ऊपर ए_सी फिट है।

यह एक इस्कूल है इस इस्कूल के आगे--

यहां एक मैदान था वहां मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं।

बोर्ड लगे है जो उस बोर्ड मे लिखा हुआ है।

और इस ऑफिस के अंदर एक कंप्यूटर रखा है।

यह एक अस्पताल है अस्पताल के बाजू से दो एम्बुलेंस खड़ी हुई है।

और यहां पेड़ लगे हुएं हैं बिजली के खंभे लगे हुएं हैं और उसी गार्डन में बोहोत अच्छे फूल भी लगे हैं।

बोर्ड भी लगा हुआ है इसी के बाजू में--